खड़ी हैं जो की एक खराब कार हैं जिसके ऊ-ऊ-ऊ--जो टूटी हुए हैं। शायद आगे से या पीछे से आगे से टूटी हुई हैं। जिसके सारे इंजन वगैरह सब दिखाई दे रहा है और ये शायद गेरेज वगैरह में खडी हैं।

और सामान भी रखा हुआ है। यहाँ पर सभी आपको बुक से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड आपको सामान मिल जायेगा। एक आदमी बैठे हैं चेयर पर य --

और ये लोहे का गेट हैं। काफी बड़ा जिसमें कुछ बच्चें जां रहें हैं और बड़ी बिल्डिंग हैं। स्कूल की काफी पेड़ पौधें हैं। आसपास केले का पेड़ हैं।

कुछ समान लिये हुए है। एक पेड़ बनाया गया है और काफी सुन्दर अ ये है कुछ चार पाँच लोग खड़े हो के बाते कर रहे है।